और डांस करना बहुत ही बच्चों को --

और इस कैफ़े का नाम दा सिटी कैफ़े है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे कॉफ़ी मिलते है ।

सुबह को टहलने के लिए भी जाते हैं और शाम को यहाँ पे बहुत सारे बच्चें लोग तरह-तरह के खेल खेलते हैं।

झरना के पास बहुत सारे लोग घुमने के लिए जात --